फूल का रंग गुलाबी रंग का है।

कुछ लोग भी उपस्थित हैं।

इस छवि में खुला मैदान दिखाया जा रहा है।

दीवार का रंग पीला और व्हाइट रंग का है।

इस छवि में एक बिल्डिंग का आकृति दिखाई दे रहा है।

पानी का रंग हरा है।

इस छवि में एक घर का आकृति दिखाया गया है।

सीलिंग का रंग काला है।

फर्श का रंग सिल्वर है।

बहोत सारे दुकाने भी है साइड में।

दीवार में एक घड़ी टी_वी है।

मस्जिद के पीछे कुछ पेड़ पौधे भी हैं।

गाड़ी का रंग काला है।

फर्श में कुछ पत्थर भी है।

फर्श का रंग सफेद है।

इस छवि में एक जिम का आकृति दिखाया जा रहा है।

इस छवि में एक घर दिखाया जा रहा है।

खिरकी में एक हरा रंग का पर्दा लगाया हुआ है।

इस छवि में एक रूम का आकृति दिखाया जा रहा है।

और इसका का रंग हरा है।

इस छवि में एक घर का आकृति दिखाया गया है।

इस छवि में कागज के ऊपर कुछ तस्वीरें दिखाई जा रहा है।

फर्श का रंग सफेद है।

बच्ची को पूजा दिया जा रहा है।

फर्श का रंग सिल्वर है।

दरवाजा लकड़ी से बना हुआ है।

दीवार का रंग सफेद है।

फर्श का रंग हरा है।

घर का रंग सफेद है।

दीवार के ऊपर कुछ झंडे भी हैं।

कुछ लोग इधर उपस्थित हैं।

घर के पीछे कुछ पेड़ पौधे भी हैं।

छे पेड़ पौधे भी है।

कुछ लोग भी उपस्थित हैं।

रूम में एक इंसान भी उपस्थित है ।

फर्श में सीमेंट ईंट है।

दीवार में कुछ चित्र भी लगे हुए हैं।

ऊपर एक पानी का टंकी है।

इस छवि में एक रूम का आकृति दिखाई जा रहा है।

बिल्डिंग का रंग सिल्वर है।

फर्श का रंग हरा है।

पानी का रंग नीला है।

गेट का रंग हरा है।